सामने ही एक स्कूटर खड़ी हुई है। और गेट के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जो की सफ़ेद कलर से पेंट किया हुआ है। इसके सामने ही एक बड़ा सा पेड़ दिखा--